बहोत सारी लड़कियां लड़के दिख रहे हैं खेलते हुए नज़र आ रहे कुछ बैठे हुए दिख रहे हैं कुछ --

कलेंडर टंगा हुआ दिख रहा है लाइट लगी दिख रही है व्हाइट कलर के पर्दे दिख रहे हैं नीचे ग्रीन --

मकान दिख रहे हैं। रेड कलर के मंदिर टाईप की एक गुम्बज दिख रही है। नीचे पानी भरा हुआ दिख रहा है। उसमें खजूर की छाया दिख रही है। कलर दिख रहा है। जहाँ --

कैनरा बैंक का बैनर लगा हुआ दिख रहा है। नीचे बैंक --

दरी बिछी दिख रही। ग्राउंड में कलर दिख रहा। ग्राउंड में एक लड़का --